ट्री है बहोत सारा और स्ट्रीट लाइट है।

पीछे एक कार है और स्कूटी वाला जा रहा--

एंड बहोत सारे जिम इक्विपमेंट्स है यहां--

एंड राइट में ग्रीन ग्रीन लीव्स है एंड पानी नीचे की ओर की गिर रहा--

और पत्थर में काई भी जमी हुई है।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

और स्ट्रीट लाइट भी है और राइट में--

लेफ्ट में ग्रीन ग्रीन के छोटे -छोटे पौधे है प्लांट --

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें लेफ्ट में--

और यहाँ पे क्रीम ब्लू कलर का--

ऊपर में ग्रे व्हाइट कलर का स्काई है।

मैं एक इमेज को देख रहीं हूॅं इसमें मानसरोवर स्टेशनरी लिखा हुआ है।

बहोत सारे लोगों की भीड़ है और ग्रीन कलर के ट्रीस है और--

फैंस हैं और ऑरेंज और पिंक कलर की बहोत सारी इसमें चेयर्स बनी हैं।

और बहोत सारे मैट्स हैं एंड यहां पे ये लोग योगा कर रहे हैं।

यहाँ एक रास्ता उधर साइड से आ रहा लेफ्ट साइड से --